यहां पर एक बड़ा सा हॉल जैसा दिख रहा है जहां पे बहुत सारे जीम करने की मशीने रखी हुई है और नीचे में --

सामने बड़ा सा घर बना हुआ है और उनमें बोहत सारी खिड़कियां बनी है कुछ पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है। जिसमें रॉयल लिखा है होटल --

यहाँ पर एक अ- रेलगाड़ी जाते हुए दिखाई दे रहा है ट्रेन और वो ब्लू और व्हाइट --